ये एक बड़ा सा रूम है एक हॉल है।

यहाँ बहोत बड़े-बड़े टायर है किसी ट्रैक्टर के टायर लगते है काले-काले रंग के है बहोत बड़े टायर है एक टिने का शेड भी है।

पीछे बहुत सारा सामान टंगे हुए हैं बहुत सारा सामान भरा हुआ है स सब सफेद रंग की लाइटें लगी हुई है।

बहोत सारे महिलाएं पुरुष बैठे हैं।

आस पास बहोत सारे ऑटो खड़े हैं जोकि पीले और हरे रंग के है।

और ये सब को कुछ प्रसाद दे रहा है।